बुद्धा मूर्ति के पास एक सफेद पौधा का गमला भी रखा गया है।

मंदिर का रंग हल्का नीला और सफेद है और छत पर लाल और नीला रंग की पट्टियां लगी हुई हैं।

गारमेंट्स और लाइट से थोड़ा सजावट भी किया गया है।

बस में काफी सारे लोग बैठे है।

रूम में टेबल फैंस और सीलिंग फैंस लगी है।

के आसपास कुछ पुराने लकड़ी के खंभे भी लगे हुए हैं।

आसमान में हल्का बादल छाए हुए हैं।

कार का इंजन अच्छी तरह से दिखाई दे रही है।

बगल में एक बार मारुति एट हंड्रेड कार खड़ी है।

पीछे के हिस्से में एक डेस्क एरिया भी दिख रहा है यहां चेयर्स और कुछ पोस्टर्स लगे हैं।

ज्यादातर टमाटर गोल हैं लेकिन कुछ पर हल्का दाग या निशान भी है।

मौसम बिल्कुल साफ है और धूप की रोशनी पहाड़ों पर छाया हुआ है।

जो इसके आस पास मैचिंग गोल टेबल्स है ब्लू ग्रीन और रेड कलर के।

दीवार पर अलग अलग मोटिवेशनल पोस्टर लगे हैं।

लोग कैजुअल कपड़ों में बैठे हैं कुछ लोग बातचीत करते हुए नजर आ रही है।

दीवार पर सफेद रंग से पेंटेड हैं।

एक बड़ा ऑरेंज कलर का जे_सी_बी मिट्टी खोद रहा है।

मैदान के आसपास छोटी छोटी घास और पौधे भी लगे हुए हैं।

बाही तरफ एक लंबे छत वाले बिल्डिंग दिख रहे हैं।

हरी घास से भरा मैदान और पीछे घने पहाड़ी जंगल दिख रहे हैं।

एक फूल का बाजार दिख रहा है ये एक छोटी छत वाली मार्केट है जिसमें कई फूल दिख रहे हैं।

मि ने एक लाल कलर के स्लीवलेस हुडी पहना है।